तेल के डब्बे है शैंपू के बोतल से और बहुत सारा यहां पे सामान है।

और यहां पे बहुत सारे बड़े-बड़े बिल्डिंग आ वि हम यहां पे दिख रहे हैं।

और यहां पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

एक लैपटॉप भी दिख रहा है टेबल पर बहुत सारे ब्रेड चॉकलेट्स के पैकीट है।

और यहां पे सामने एक गेट है और उसके अंदर यहां पे--

बैंक ट्वेंटी फोर हॉर्स ए_टी_एम यहां पे दिख रहा है।

यह एक यहां पे ग्राउंड है और यहां पे बहुत सारी--

यहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगस यहां पे दिख रही--

सेक्शन बनाया गया है ऊपर यहां पे--

ये एक यहां पे गार्डन या फॉरेस्ट दिख रहा है।

सामने यहां बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं।

नीचे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस दिख रही है और सामने यहां पे बहुत सारी कारें खड़ी हुई है।

और टू व्हीलर गाड़ियां भी है सड़क पे भी कुछ कार जा रही है।